इस पिक्चर में दो हाथी दिखाई दे रहे हैं। एक छोटा हाथी दिखाई दे रहा है और एक बड़ा हाथी दिखाई दे रहा है।

जिसका रंग व्हाइट है और एक बाँस से बाँस की लकड़ियों से कुछ बना हुआ भी है।

और सामने में एक इमारत है जिसका कलर लाल है लेकिन उसमें काले काले धब्बे भी लगे हुए हैं जिस कारण से वो अच्छा नहीं लग रहा है।

यह चित्र एक हॉस्पिटल का है। जिसका नाम है न्यू लाइफ इमर्जन्सी हॉस्पिटल ।